नाम का एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

डार्क क्रीम कलर की मैट रखी हुई है और साइड से कुछ छो--

वायलेट रंग की साड़ी में उनके पास खड़ी हुई हैं उस टीचर ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।

एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए ढोल बजाते हुए--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

चार बड़े बेड नजर आ रहे हैं और ग्रीन कलर की पिलो नजर आ रही है।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

ऊ हु घर के पास में लिखा हुआ है सी_पी_एस_सी --

टर्न साइड से कुछ लोखंड के रोड्स उठा रहा है और एक खुला आसमान नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक वाइट कलर --

ऊपर ग्रीन और ब्लैक कलर के बलून से डेकोरेट किया हुआ है कुछ लाइट्स की रोशनी उन कार पर पड़--

कागजे पड़ी हुई नजर आ रही है।

सोफे नजर आ रहे हैं और साइड से कुछ रेड कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ--

तस्वीर में मुझे एक बहुत बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है उस हॉल में--

कुछ डेकोरेट भी किया हुआ हैं एक चेयर भी रखी हुई हैं और फ्लोर पर--

कुछ फुलझड़ी और अनार जल रहे हैं आँ--

कुछ गर्ल्स नजर आ रही है और एक लड़का इस पेड़ के पास खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर मे एक न स्टेज नज़र आ रहा है जिस स्टेज के पास--

इस तस्वीर में हरे रंग की दो से तीन बसेस खड़ी हुई नजर आ रही हैं एक बुजुर्ग आदमी--

है और उस पानी के अंदर लीची नाम का फ्रूट्स रखे हुए हैं कुछ पानी में डूबे हुए हैं और कुछ ऊपर सूखे हैं कुछ ऐसे खड़े--

सेम दिख रही हैं और तीन से चार चेयर्स भी नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में एक रिटेल स्टोर नजर आ रहा है उस रेस्टेल स्टोर में एक--

बिड़ी ब्राउन कलर की नज़र आ रही है कुछ बिस्किट्स के पेकेट्स --

ब्रशेस सोप्स और कुछ डिटोल्स के सैशे भी नजर आ रहे हैं बोरवीटा के पैकेट्स भी।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है उस हॉस्पिटल के अंदर एक प--

पेशेंट स्लीपिंग बेड नजर आ रहा है उस पर पिलो रखी हुई हैं एक अलमारी नजर आ रही है जिसके टॉप पर--

इस शाॅप में मुझे एक किराना शाॅप नजर आ रही है जिसके अंद--

पर लाइट की रोशनी भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक कार नजर आ रही है कांच के विंडो खुले हुए हैं और एक आदमी--

इस शॉप्स के बाहर से तीन बाइक्स खड़ी हुई और उन्होंने डिस्प्ले किए हुए--

बड़े से शोरूम में सभी चीजे हो और बाहर से धूप की रोशनी भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में रात का समय नजर आ रहा है आसपास से पूरी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं।

कुछ टेबल पर कुछ तीन वाइट कलर की गोनी रखी हुई है एक स्टील की टाकी भी लगी हुई है छोटा सा पीच नजर आ रहा है।